बूढ़ा सा आदमी हे यो वह कुछ चेक करता हुआ नीचे पेपर वगैरा को देखता हुआ दिख रहा है हम देख पा रहे है वहां पर साइड में एक स्प्राइट की बोतल भी रखी हुई है और साइड में कुछ येलो कलर यो --

हम देख पा रहे हो वह पे एक शटर भी लगा के रखा है जहां पर हमें कुछ लोग अंदर की तरफ खड़ेनजर आ रहे हैं।

और वहां पर एक लड़का है साइकिल चलाता हुआ साइकलिंग करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और नीचे कुछ डंबलस और कुछ चीजे र--

एक्सरसाइज करते हुए हमें नजर आ रही है हम देख पा रहे है उसने ब्लैक शूज पहने हुए है और सर पे कैप लगाके नीचे एक ग्रीन कारपेट ऑलरेडी बिछा हुआ लेकिन उसपे उसकी उसके ऊपर उसने एक और ब्लैक --